यहाँ पर एक देवी जी की मूर्ति रखी हुई है एक बड़ी मूर्ति बनी हुई है और इसमें ही छोटी-छोटी मूर्तियां बनी हुयी हैं और स----